और कुछ खिड़कियां दिख रही हैं।

और दो लड़कियां सामने खड़ी हुई दिखाई।

यहां एक खाने पीने की दुकान दिखाई दे रही हैं।

यह एक केबिन दिखाई दे रहा है।

और एक नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ बैनर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक जिम रूम दिखाएं दे रहा है। जहां पर बहोत सी लाइट्स लगी हुई--